जु बैठ्युं छा वैका नीसाण एक लाखड़ा की मेज कर दिखेण लगीं उंडे फणा एंच फणा कुछ डाला भीन दिखेण लग्यां भैर बिटि हम ते कुछ लोहा का एंगल भीन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम ते एक कमरा करा दिखेण लग्युं जै का ओर पोर चदर छा लगीं अर एंच भी चदर छ लगीं जफण कुछ लैटन दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक बड़ु डब्बा कर दिखेण लग्युं जै पर लाल रंग छ होयुं अर नीसाण वै एक दराजु करा वै पर लग्युं जै पर जंदा लग्युं।

दिखेण से यु एक पोस्ट बॉक्स सा लगण लग्युं जै पर चिट्ठी डालदा छन उने बिटि हम ते एक नौनियाल छ दिखेण लग्युं।

दिखेण से ये एक दुकानि लगण लगीं जै का भितर फणा हम ते बहोत सारा एंगलों पर कपड़ा दिखेण लग्यां।

वफणा हम ते कुछ लोग भी छ दिखेण लग्यां फंडे हम ते एक बड़ी इमारत छ दिखेण लगीं जै का भितर फणा हम ते कुछ लोग छ दिखेण लग्यां।